नमस्ते दोस्तों एम्बेलिशिंग आ प्लॉट पर इस ट्यूटोरियल मेंआपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल की समाप्ति पर आप यह करने में सक्षम होंगे 1प्लॉट कलर लाइन styleलाइनविड्थ एट्रिब्यूट्स को बदलना
एम्बेडेड लेटेक से प्लॉट में शीर्षक जोडना
एक्स तथा य एक्सेस लेबल
प्लॉट में टिप्पणी जोडना एक्सेस को सेट करके उसकी सीमाएँ प्राप्त करना
यह ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले हम आपको यूजिंग प्लॉट इंटरएक्टिवली ट्यूटोरियल पूरा करनेकी सलाह देते हैं
अतः pylab के साथ इपिथॉन शुरू करें टर्मिनल खोलें और टाइप करें इपिथॉन हाइफेन पाइलैब
पहले साधारण प्लॉट बनाएँ और उसे सजावट करने की शुरूवात करें अतः टाइप करें एक्स इस इक्वल टो लिनस्पेस ब्रैकेट्स में 2420 फिर टाइप करें plotxसिन जैसा हम देख सकते हैं लाइन का डिफॉल्ट कलर और डिफॉल्ट मोटाई पाइलैब द्वारा निर्धारित है
यदि हम प्लॉट में इन पैरामीटर्स को नियंत्रित करेंगे तो यह ठीक नहीं होगा
यह प्लॉट कमांड में अतिरिक्त आर्ग्युमेंट पास करने से संभव हो सकता है
हम पहले आकृति हटायेंगे और अतिरिक्त कलर आर्ग्युमेंट पास करके वही प्लॉट करेंगे
लाल रंग के लिए र आर्ग्युमेंट पास करें
अतः टाइप करें सीएलएफ फिर प्लॉट ब्रैकेट्स में xसिन सिंगल कोट्स में र
समान प्लॉट लाल रंग में दिखाई देगा
लाइन की मोटाई लाइनविड्थ आर्ग्युमेंट द्वारा बदली जा सकती है
अतः टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट्स में xcosलाइनविड्थ इस इक्वल टो 2 अब एक फ्लॉट दूसरी मोटी लाइन के साथ बनता है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
लाइनविड्थ 3 के साथ नीले रंग में सिन प्लॉट करें
उपाय के लिए टर्मिनल पर जाएँ लाइनविड्थ और रंगो का सामिश्रण हमारे लिए कार्य करेंगे
अतः टाइप करें सीएलएफ फिर टाइप करें प्लॉट एक्स सिन सिंगल कोट्स में ब लाइनविड्थ इस इक्वल टो 3
न जुड़े हुए प्वॉइंट के समूह के रूप में लाइन की स्टाइल प्राप्त करने के लिए लाइन स्टाइल आर्ग्युमेंट कलर आर्ग्युमेंट के साथ या उसके बिना पास करें
अतः उसके लिए टर्मिनल पर टाइप करें सीएलएफ फिर टाइप करें प्लॉट xसिन डॉट सिंगल कोट्स में
हमें जिनमें सिर्फ़ प्वॉइंट्स हैं वह प्लॉट प्राप्त हुए
समान प्लॉट को नीले रंग में प्राप्त करने के लिए टाइप करें सीएलएफ फिर टाइप करें प्लॉट एक्स sinसिंगल कोट्स में ब डॉट
आर्ग्युमेंट पास करने के लिए अन्य उपलब्ध ऑप्शन प्लॉट के प्रलेखन में देखे जा सकते हैं
यह देखने के लिए हम टर्मिनल पर टाइप कर सकते हैं प्लॉट फिर क्वेस्शन मार्क
अतः आप वास्तव में प्रलेखन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं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
हरे वृत्त से भरा हुआ साइन वक्र प्लॉट करें
उपाय के लिए अब टर्मिनल पर जाएँ
हम लाइन स्टाइल तथा रंगो के समिश्रण का इस्तेमाल करेंगे
अतःटाइप करें clf फिर टाइप करें प्लॉट ब्रैकेट में xकॉस सिंगल कोट्स में गो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
लाल डैश लाइन तथा लाइनविड्थ 3 में एक्स वर्सस टान का कर्व प्लॉट करें
अतः हम उपाय के लिए टर्मिनल पर जायेंगे
यहाँ हम लाइनविड्थ आर्ग्युमेंट तथा लाइनस्टाइल के समिश्रण का इस्तेमाल करेंगे
अतः आप टर्मिनल पर टाइप कर सकते हैं clf फिर प्लॉट ब्रैकेट्स में एक्स कॉस सिंगल कोट्स मेंr हाइफेन हाइफेन अब हम जान चुके हैं कि कैसे खाली प्लॉट को अपने पसंद के रंग स्टाइल तथा मोटाई से बनाया जाता है
अब हम आगे प्लॉट की सजावट के बारे में देखेंगे
अब फंक्शन माइनस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4एक्स माइनस 5 के लिए प्लॉट करना शुरू करें
अतः इसके लिए टाइप करना होगा सीएलएफ फिर प्लॉट ब्रैकेट्स में xमाइनस एक्स स्टार एक्स प्लस 4 स्टार एक्स माइनस 5rलाइनविड्थ इस इक्वल टो 2
जैसा कि आप देख सकते हैं प्लॉट का वर्णन करने वाली आकृति का कोई विवरण नहीं हैं
प्लॉट क्या है यह वर्णन करने हेतु एक शीर्षक जोड़ने के लिए titleकमांड का उपयोग करें
अतः हम टर्मिनल पर टाइप कर सकते हैं टाइटल ब्रैकेट्स में और डबल कोट्स पैराबोलिक फंक्शन एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4एक्स माइनस 5 आकृति में अब शीर्षक है
किंतु यह स्वरूपित नहीं हैं तथा साफ नहीं दिख रहा है
यदि यहाँ खंड तथा अधिक जटिल खंड हों जैसे कि लॉग और ईएक्सपी तो यह खराब दिखेगा
अतः यदि शीर्षक लेटेक्स में फॉर्मेटिंग की तरह दिखाई देगा तो अच्छा नहीं होगा
यह स्ट्रिंग के पहले तथा बाद के भाग में डॉलर चिन्ह जोड़ कर संभव है जो लेटेक्स स्टाइल में होना चाहिए
अतः कमांड टाइप कर सकते हैं टाइटल ब्रैकेट्स में पैराबोलिक फंक्शन डॉलर सिग्न माइनस एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4एक्स माइनस 5 डॉलर सिग्न जैसा हम देख सकते हैं बहुपद अब स्वरूपित हो गया है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
आकृति के शीर्षक को इस तरह से बदलें कि पूरा शीर्षक लेटेक्स स्टाइल में स्वरूपित हो
उपाय के लिए टर्मिनल पर जाएँ
उपाय पूरे स्ट्रिंग को डालर के बीच में बन्द करता है
अतः आप टाइप कर सकते हैं टाइटल ब्रैकेट्स में डॉलर सिग्न पैराबोलिक फंक्शन x स्क्वेयर्ड प्लस 4एक्स माइनस 5 डॉलर सिग्न
हालाँकि हमारे पास शीर्षक होने के बावजूद प्लॉट एक्स तथा य एक्सेस के लेबल बिना पूरा नहीं होता है
हम x एक्सिस को एक्स तथा y एक्सिस को फ़ लेबल देंगे
इसके लिए टर्मिनल में टाइप कर सकते हैं ज़्लाबेल ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में एक्स फिर यलाबेल टर्मिनल पर ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में फ़ ओएफ एक्स
जैसा कि आप देख सकते हैं ज़्लाबेल तथा यलाबेल कमांड स्ट्रिंग को आर्ग्युमेंट के रूप में लेते है
एक्स लाबेल x एक्सिस में एक्स के रूप में लेबल सेट करता हैं और य लाबेल y एक्सिस में फ़ के रूप में नाम सेट करता है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
एक्स और य लेबल्स को एक्स और फ़ के रूप में लेटेक्स स्टाइल में सेट करें
क्योंकि हमें लेटेक्स स्टाइल फॉर्मेटिंग की आवश्यकता है हमें दो के बीच में स्ट्रिंग को बन्द करना होगा
टर्मिनल पर जाएँ तथा टाइप करें ज़्लाबेल ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में दो डॉलर चिन्ह के बीच में एक्स और फिर टाइप करें यलाबेल और दुबारा ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में दो डॉलर चिन्ह के बीच में फ़ ओएफ एक्स प्लॉट उन प्वॉइंट्स को छोड़कर जो नामित नहीं हैं प्लॉट लगभग पूरा हो चुका है
उदाहरणस्वरूप प्वॉइंट 2 1 लोकल मॅक्सिमा है
हम प्वॉइंट को तदनुसार नाम देंगे
इसके लिए हम फंक्शन एनोटेट इस्तेमाल करेंगे
अतः इसके लिए आप टर्मिनल में टाइप कर सकते हैं एनोटेट ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में लोकल मैक्सिमा कॉमा क्सी इस इक्वल टो ब्रैकेट्स में 2 कॉमा 1 जैसा कि आप देख सकते है कमांड की टिप्पणी के लिए पहला आर्ग्युमेंट नाम है हमें प्वॉइंट को मार्क करना चाहिए और दूसरा आर्ग्युमेंट प्वॉइंट का निर्देशांक है जहाँ नाम दिखाई देना चाहिए
यह दो संख्याओं सहित एक ट्यूपल है
पहला एक्स co आर्डिनेट तथा दूसरा य co आर्डिनेट है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
प्वॉइंट 4 0 पर रूट नामक एनोटेशन बनाएँ
पहले एनोटेशन के साथ क्या होता है
उपाय के लिए टर्मिनल पर जाएँ
आप देख सकते हैं प्रत्येक टिप्पणी की हुई कमांड आकृति पर एक नई टिप्पणी बनाती है अब हमारे पास प्लॉट की सजावट के लिए सब कुछ है परंतु यदिहमने एक्सेस की सीमाए को सेट नहीं किया तो प्लॉट अधूरा होगा प्लॉट विंडो पर उपल्बध बटन द्वारा यह हो सकता है अन्यथा सीमाए टर्मिनल से प्राप्त तथा सेट की जा सकती है सीमाए पाने के लिए xlimfunction तथा ylim फंक्शन इस्तेमाल करें अतः टर्मिनल में टाइप करें एनोटेट ब्रैकेट्स में डबल कोट्स मेंroot कॉमा क्सी इस इक्वल टो ब्रैकेट्स में माइनस 4 कॉमा 0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

2pi से 2पी के बीच में लाइन मोटाई 4के साथ कोसाइन ग्राफ ड्रा करें 2
प्रलेखन को पढ़के पता लगाओ की ylabelकमांड में टेक्स्ट की अलाइनमेंट को बदलने का कोई तरीका है हा या नहीं यह पर्याय है और आखरी सवाल आप x2 5x6 को शीर्षक के रूप में लेटेक्स स्टाइल में कैसे फॉरमॅट करेंगे
और उत्तर हैं 1
2pi से 2पी के बीच में लाइन मोटाई 4के साथ कोसाइन ग्राफ बनाने के लिए हम लिनस्पेस तथा प्लॉट कमांड के रूप में एक्स linspace 2पी 2पीइस्तेमाल करेंगे फिर प्लॉट करेंगे एक्स कॉस लाइनविड्थ4 और दूसरा उत्तर है नहीं ylabelकमांड में टेक्स्ट की अलाइनमेंट को बदलने का कोई पर्याय नहीं है तीसरा और आखरी लेटेक स्टाइल फॉरमॅटिंग में शीर्षक सेट करने के लिए हम निम्न समीकरण लिखेंगे titlex2 5एक्स6 आशा करते हैं कि इस ट्यूटोरियल का आपने आनंद लिया और इसे लाभदायक समझा